इस चित्र में दिखाई दे रहा हैं और ये एक कोचिंग का चित्र --

इस मंदिर के नीचे उतरो भी सीढ़िया भी हैं और उसके सामने एक बहोत बड़ी नदी भी है और वहाँ पे बतके भी --

इस चित्र में दिखाई दे रहा और ये एक मज़ार का चित्र है और मस्जिद भी है।

जैसा की इस चित्र मे दिखाया जा रहा है की यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह देखने से ऐसा लग रहा है की जैसे रेलवे का पूल हो।